और यहा पे बड़ा-बड़ा छोटा-छोटा पेड़-पोधा लगा हुआ है और यहा पे गार्डन भी है साइड मे देखने मे काफी ज्यादा सुधार लग रहा है बोहोत ही सुन्दर।

सब हम को दिखाई दे रहा है बहुत ही बड़ा महल है घर है और यहाँ पे एक साइकिल है एक मोची वहां पे जूता सी रहा है।

और इस महल में काफ़ी ज्यादा शीशा लगा हुआ है एसी लगा हुआ है महल का कलर देखने में काफ़ी ज्यादा सुंदर लग रहा है साइड में हराभरा पड़े पौधा लगा हुआ है देखने में काफ़ी ज्यादा--

एकर लाइट कनेक्ट है उस साइड में हरा-भरा पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है बहुत ही बढ़िया है साइड में मकान भी है देखने में --

हम को एक स्कूल दिख रहा है जो की काफ़ी ज्यादा लम्बा स्कूल है और यहाँ पे एक पेड़ है जो की बहुत ही हराभरा पेड़ है।

यहाँ पे एक गार्डन दिख रहा है जो की गार्डन में एक पानी पानी पटा रहा है जो की यहाँ पे गार्डन में काफी ज्यादा देखने में काफी ज्यादा हरा भरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर दुकान दिखाई दे रहा है जो की किराना दुकान है बहुत सारा सामान सब है बिस्कुट चॉकलेट झीलिया कुरकुरे देखने मे खाने मे बहुत ही अच्छा लगता है।

और यहाँ पे मोटर साइकल लगा हुआ है ईटा है और साइड मे सुखा पेड़ है हरा भरा भी पेड़ है दिखने मे सुंदर लगता है।

हमको बहुत ही सुंदर घर दिख रहा है जो कि घर दो महल का है देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही बढ़िया है साइड में हरा-भरा पेड़-पौधा लगा हुआ हैं छोटा-छोटा गमला में।

बहुत सारा कार लगा हुवा है और यहाँ पे बहुत सारा आदमी सब दिख रहा है और साइड मे हरा-भरा पेड़-पोधा दिखाई दे रहा है और छोटा रूम भी दिखाई दे रहा है। देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा ह

और इस पूल मे बहुत ही बड़ा लाइट लगा हुआ है और यहा पे बहुत सारा लोहा लक्कड़ का अच्छा से जो कि यहाँ पे ट्रेन चल रहा ये देखने मे काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और यहा पर बहुत सारा लाइट लगा हुआ है। बहुत सारा--

और यहा पे फल फ्रूट है यहा पे केला सब है ओर बहुत सारा अनेक-अनेक प्रकार के फल फ्रूट है देखने मे काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है खाने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ह --